इसमें बल्ब लगा हुआ है यह इंडियन बैंक --

इसमें झल्लर बनी हुई हैं। इसमें गेरुआ कलर की पर्दा बनी हुई है।

फूल से बना हुआ है शादी वारा जयमाला। फूल और फुलझड़ियाँ नीचे लटक रही हैं और पन्नी लगी हुई है। बहोत सुंदर शादी माला जयमाला बना हुआ है।